यह एक रोड है और यहाँ पे सीधा जा के एक मंदिर जैसा भी है सफ़ेद कलर का पेंट किया हुआ और यहाँ गाछी भी है दो।

केक भी है जो पीला कलर ओ-और आसमानी कलर है यहां बैलून है जो --

नीचे मम अथि मम कत्थी कलर का सूट जो ओथी ऊपर स्वेटर दुप्प --

यहां पे दो आदमी भी हैं एक आदमी ने उजरा कलर का टी-शर्ट पहन रखा है नीचे पजामा शर्ट पहन रखा नीचे पजामा पहेन रखा एक --

ये एक पिज्जा शॉप है और यहां बहुत तरीके के पिज्जा मिलते है और यहां पे बहुत सारे कस्टमर अ भी आते --

और पिंक कलर किसीने गुलाबी कलर का टी-शर्ट पहन रखा है यहाँ महिलाएं --